कोई बड़ा सा स्कूल है। जिसका फील्ड दिख रहा है और ये सब है।

ई --

ह जंगल है। जहाँ पे छोटे बड़े पौधे दिख रहे हैं और ये --